हाथ में दो वाइपर लिए हुए है दो आदमी हैं।

न नदी के किनारे हरे-भरे पेड़ है।

ये एक मदरसा है। मदरसे के सामने बड़ा-सा मैदान है। मैदान में ह ग्रिल लगी हुई है।

ग्रिल में तीन कलर का पेंट हुआ है वो मदरसे के ऊपर चार झंडे लगे हुए है झंडे का कलर हरा हैं।

ये एक जिम है।

बगल में आइसक्रीम दुकान है। बाहिर दो बड़ी-सी टेबल रखी हुई हैं। टेबल के ऊपर दो बड़ी सी छतरी लगी हुई है।

मैडम बच्चों को कुछ बताना चाह रही है कुछ सिखा रही हैं।

ये एक बड़ी-सी दुकान है। दुकान के बाहेर बहोत-सी कुर्सियें पड़ी हुई हैं।

ये एक हवाईअड्डा है। हवाईअड्डे पे एक सफ़ेद कलर का जहाज खड़ा है।

ये एक कार का शोरूम है। कार के शोरूम में एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है। वाइट कलर की कार खड़ी है।